अ आगे एक लेक है और एक बहुत बड़ी जमीन है जमीन के अंदर बहुत सारे--

और एक ग्रास का एक ग्राउंड है बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है वो--

बहुत सारे ड आयरन के चैनल पड़े हुए है।

और रिसेप्शन पे एक जे पर्सन खड़ा हुआ है रिसेप्शन पे क्लियर नेम नहीं दिखाई दे रहा और वो और एक फोर सीलिंग हो रही है फ्लोर वॉल पे--

और ऊपर फोर सीलिंग पे बहुत सारी लाइटें चल रही है।

नीचे पिलर पे जो शेप बनी है वो ब्राउन कलर की शेप है ।

बस के अंदर बहुत सारी चेयर पड़ी हुई है।

जहां पर लोग बैठते हैं वो रेक्टेंगल कलर की शेप है और चेयर आई थिंक वन तू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन ऐट चेयर है।

मॉल का नाम आई थिंक इनोक्स मॉल है जिसकी स्पेलिंग एन ओ एक्स स्टार्टिंग वर्ड आई थिंक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग ऊपर स्क्वायर शेप में इसके पत्थर लगे हुए है।

और जो फोर र्सेलिंग बनी हुई है वो सर्किल शेप में बनी हुई है।

एक स्क्रिप्चर डिजाइन बना हुआ है डिजाइन कलर बहुत अच्छा लगा--

एक रोड आ रही है ऊपर से रोड से एक सीढ़ी नीचे आ रही है सीढ़ी--